और एक ट्रेन जाते हुए नजर आ रहा है और एक लोहा का पाइप भी नजर आ रहा है ।

ये भी एक अ रेलवे स्टेशन है जो जिसमें एक से बहुत सारे पटरी दिख रहे है ।

जो की ईंट का बना हुआ है और बहुत सारे खिड़की हैं और सामने में तीन दरवाजे नजर आ रहे हैं जिसमें दो बंद हैं और एक खुले हुए हैं।

ये एक बहुत बड़ा-सा नदी है जिसमें सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है और बिच में थोडा खा नजर आ रहा है।